ठीक ए सी नीचे एक वॉलीबॉल एक बास्केटबॉल और एक फुटबॉल रखा गया है।

भीतर कुछ लोग बैठे हैं तो उसके ठीक सामने एक महिला और उसके ठीक पीछे एक लड़का बैठा हुआ है।

मुर्गी का चोच लाल है।

पानी का रंग हल्का पिला नजर आ रहा है।

और ऊपर का रंग सफेद रंग से पेंट किया गया है।

यह किस स्कूल का एग्जीबिशन है।

एक आस्तिक चिन्ह भी लगा हुआ है और एक स्वामी विवेकानंद का चित्र भी बना हुआ है।

दीवार का रंग बिल्कुल सफेद है पीछे खिड़की पर एक पर्दा भी लगा हुआ है जिसका रंग ब्लैक है।

उसके ठीक सामने स्विच बोर्ड और उसके ठीक सामने एक कैलेंडर रखा हुआ है।

झालर भी दिखाई दे रही है और कुछ फूल जोकि कृत्रिम रूप से बनाई गई है उसको सजाने के लिए।

यहां बहोत सारे कार पार्किंग में है जिसमें से कुछ कार काली है तो कुछ सफेद।

छोटे-छोटे घास भी है बैठने के लिए बहोत सारे शिविर बनाई गई है।

यह एक रेलगाड़ी की तस्वीर है।

स्थान के ठीक पीछे छोटे छोटे बहोत घास नजर आ रही है।

अंदर भी बड़े ही सामानों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है।

सामने एक फास्ट फूड की दुकान दिख रही है जिसके ऊपर रॉलिक लिखा हुआ हैं।

एक ग्रीन कलर का डस्टबिन का डिब्बा नजर आ रहा है।

कुर्सियों का रंग सफेद है जबकि टेबल का रंग ब्लू है।

उसके ऊपर बहुत सारे क्रेन लगे हुए हैं।

नदी के इर्द गिर्द बहुत सारे पत्थर भी हैं।

सामने एक पुस्तकालय दिख रही है जिसके सामने राज्य पुस्तकालय रांची लिखा हुआ है।

सामने एक स्टेट बैंक की ए_टी_एम है जिसके बाहर बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं।

दीवार पर हरि भाई चश्मे वाला लिखा हुआ है।

लोहे की बहुत ज्यादा स्तंभ दिखाई दे रही है।

गमले पर छोटे छोटे पौधे भी है पीछे रोड के ठीक पीछे एक भीड़ भी है जो की बहुत बड़ी है।